table of fields with views पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम table of fields के table बनाना सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: उबंटु लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम drupal 8 और firefox वेब ब्राउजर
आप अपने पसंद के किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
अब हम सीखेंगे कि fields के table we हैं
माना कि भविष्य के events की सूची को हम इस तरह table में दिखाना चाहते हैं
यहाँ यूजर events का कुछ विवरण औऱ उससे संबंधित तारीखों को देख सकता है
यहाँ दिखाए गए fields वहाँ events content type में है
यहाँ हम कुछ events के कुछ fields को ही प्रदर्शित करते हैं
विशेषत: हम केवल उन events को प्रदर्शित करते हैं जिसकी तारीख वर्तमान के बाद की है
अन्य programs में इस तरह के कंटेंट्स की चुनित such को reports या query results भी कहते हैं
अब fields के table के लिए view बनाते हैं
अब अपनी website खोलें जिसे हमने पहले बनाया है
shortcuts पर जाएँ फिर views पर click करें औऱ फिर add new view पर click करें
हम इसे upcoming events name change अब content of type को all से events में बदलें
हम इसे किसी भी content type के लिए कर सकते हैं – log entries files content revisions taxonomy terms users custom blocks आदि
अभी के लिए हम sorted by को newest first ही रखेंगे
create a page को check करें और display format में table of fields चुनें
हम items to display में default value 10 ही रखेंगे
अब हम use a pager और create a menu link पर check करेंगे
menu में हम main navigation चुनेंगे और link text में upcoming events चुनेंगे
हमारे menus अभी के लिए अच्छी तरह से संगठित नहीं हैं लेकिन हम जल्दी ही उसे करेंगे
save and edit पर click करें
अपने 5 सवाल देखते हैं display पेज है
format table है
fields में हमारे पास title है
filter criteria में हमें केवल upcoming events चाहिए अत: हमें उन्हें बदलने की जरूरत है
sort criteria गलत है क्योंकि हमें इसे event date क्रम में रखना चाहिए और ना कि published date में
शुरू करने के लिए save पर click करें
यहाँ बीच में हमारे page अपना page settings है
हमारे पास path menu access permission है और अब हर कोई landing पेज को access करेगा
हम यहाँ add buttons पर क्लिक करके header या footer जोड़ सकते हैं
हम यह जोड सकते हैं कि we करना है यदि यहाँ कोई रिजल्ट्स नहीं है
हम यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि page में कितने items हैं
और यदि pager यहां नीचे है या view के तल पर read more link के साथ नहीं है
advanced टैब में यहाँ और भी चीजें है जिन्हे हम इस tutorial में नहीं कर रहे हैं
हम पहले ही events और user groups से connected है
अत: हम user groups से जानकारी so सकते हैं जो हमारा events प्रायोजित कर रहा है औऱ फिर उन्हें इस view में रखें
यह relationships और context का उपयोग करके होता है जिसे हमने बनाया था
add आगे बढें औऱ fields को जोडें जिसे हम अपने table में चाहते हैं
add पर click करें और event date field आने तक नीचे scroll करें
मैंने content type name का उपयोग करके अपने fields को बडी सावधानी से label कर दिया है
अत: मैं बाद में views में उनको आसानी से पा सकती हूँ
event date पर check करें औऱ apply पर click करें
यहाँ हम कुछ settings चुनेंगे
अभी के लिए create a label और place a colon options checked है
date format को default ही रहने दें अर्थात medium date
अभी इनकी चिंता न करें
और अतंत: apply all displays button पर click करें
अत: अब हमारे पास 2 columnstitle और event date हैं
अपने अगले field को जोड़ें add पर click करें और इस समय event logo पर जाने तक नीचे scroll करें
इसे चुनें औऱ apply पर click करें
इस समय create a label option अनचैक करें
thumbnail की image style चुनें
फिर link image to ड्रॉपडाउन में content चुनें
अगले tutorials में इस layout के लिए हम नया image style बनाना सीखेंगे लेकिन अभी के लिए हम thumbnail चुनेंगे
apply पर click करें अब हमें preview में thumbnails दिखना चाहिए जिसे devel ने प्रत्येक event के लिए तैयार किया है
वापस जाएँ और फिर से add पर click करें इस समय नीचे scroll करें और एक से अधिक field चुनें
event topics और event website चुनें और फिर apply all displays button पर click करें
अगले पेज में सब कुछ ऐसे ही रहने दें और apply पर click करें
ध्यान दें कि अब हम views में एक समय 2 fields set कर सकते हैं और प्रत्येक की अपनी खुद की settings screen होगी
फिर से apply all displays पर click करें
अब हमारे पास event topics और event website है
हमारे पास अपनी title date topics और website है save पर click करें
अपने कार्य को लगातार सेव करना एक अच्छी आदत है
देखें हमारी display एक page है
हमारा format table है
हमारे fields set हैं
filter criteria और sort criteria अभी भी गलत हैं
filter criteria को जोड़ने के लिए add button पर click करें
event date आने तक नीचे scroll करें फिर event date चुनें और apply पर click करें
यह screen काफी महत्वपूर्ण है
operator ड्रॉपडाउन में हम is greater than or equal to चुनेंगे
value type में यदि हम आज की तारीख डालते हैं तो यह असुविधाजनक होगा
हमें प्रत्येक दिन नई तारीख प्रविष्ट करनी होगी लेकिन हम an offset of the current time चुन सकते हैं
और value field में now type करें
इसका मतलब है कि केवल वो events ही वर्तमान समय के बाद प्रदर्शित होंगे
वर्तमान समय इसे बनाने का समय नहीं है यह समय है जब यूजर इसे देख रहा हो
अत: केवल यूजर ही भविष्य की events देख सकता है
apply पर click करें
जैसा कि हम देख सकते हैं devel द्वारा बनाया गया प्रतिरूपी कंटेंट हमें कोई भविष्य की तारीख नहीं बताता
अत: हमारा view सही कार्य कर रहा है यह सुनिश्चित करने के लिए स्वत: ही कुछ events अपडेट करते हैं
कुछ events ज्ञात करें और event date में भविष्य की कोई तारीख प्रविष्ट करें
content पर जाएँ events type filter करें
किसी भी event को चुनें और edit पर click करें फिर तारीख को भविष्य की तारीख में बदलें
save पर click करें
tutorial को रोकें और लगभग 6 या 7 events update करें
इसे करने के बाद tutorial पर वापस आयें
shortcuts पर जाएँ views पर click करें upcoming events खोजें edit पर click करें
हम अब view को एडिट करने वापस जायेंगे जहाँ हमने उसको छोडा था
प्रिव्यू देखने के लिए नीचे scroll करें
हम अब greater than or equal to now के साथ अपनी event date की सही filtering कर रहे हैं
फिर हम sort criteria check करेंगे
default रूप से drupal घटते क्रम में लेखन की तिथि द्वारा कंटेंट को sorts करता है
events के लिए यह उपयोगी है कि event date आरोही क्रम में हो
इसे बदलने के लिए authored on पर click करें और remove पर click करें
add पर click करें औऱ फिर से event date मिलने तक नीचे scroll करें
apply पर click करें
अब order में sort ascending चुनें जो हमारे events को आज से sort करता है
apply पर click करें
अब हमने अपने events को अपडेट कर दिया है और सही से sort criteria set कर दिया है
हम सूची को देखने के लिए सक्षम होने चाहिए जो कि कुछ इस तरह हैं
भविष्य में आने वाले सभी events event date क्रम में सूचीबद्ध हैं
आगे बढने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपने save पर click कर दिया है
अत: यहाँ एक अन्य बात है कि हम इस विशेष view के साथ कार्य करने जा रहे हैं
title और logo columns को जोडें और फिर title और event date को सॉर्ट करने योग्य बनाएँ
जब हम यह करते हैं यूजर title पर click कर सकता है और यह feature द्वारा sort होगा
ऊपर scroll करें format table पर जाएँ औऱ इसके बाद settings पर click करें
content event logo में column ड्रॉपडाउन से title चुनें
यहाँ separator के लिए केवल simple line break प्रविष्ट करें
title और event date columns को आरोही क्रम में sortable करें और फिर apply पर click करें
अत: अब हमारा title और logo समान column में हैं और दोनों title और event date अब sortable हैं
title को event name में बदलें
title पर click करें और label में title को event name में बदलें फिर apply पर click करें
प्रिव्यू area में scroll करें हमारे event name और logo और date सभी set हैं
बाद के tutorials में हम अपने logos को बेहतर बनाने के लिए इसके size को बदलना सीखेंगे
अभी के लिए save पर click करें औऱ अपने view को test करें
homepage पर जाने के लिए back to site पर click करें
upcoming events पर click करें
आपको table भविष्य में आने वाली events के साथ व्यवस्थित दिखना चाहिए
आप यह भी date सकते हैं कि आप event name और event date द्वारा sort कर सकते हैं
इसी के साथ हमने अपना पहला table view पूर्ण किया
संक्षेप में
इस tutorial में हमने fields के tables को बनाने के बारे में सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद